देखने में यह तस्वीर --

इसमें हमें लाइट्स भी दिख--

देखने से यह तस्वीर हमें किसी ऑफिस की ल--

सी यह हमें कोई इमारत की तस्वीर लग रही है।

इस दृश्य में हमें कोई फैक्ट्री या--

इस तस्वीर में हमें कोई मशीन नजर आ रही है।

इसमें हमें बहोत सारे वर्कर्स भी दिख रहे हैं।

सड़क नज़र आ रही है।

देखने से यह तस्वीर--

इस दृश्य में हमें बहोत सारी बच्ची--

यह दृश्य हमें किसी फार्म का दिखाई दे रहा है।